बड़ासा पक्कासा रोड बना हूआ है एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसके ऊपर ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है बहुत सारे बास रखी हुई है और बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लाइटे जली हुयी है सामने बहुत सारे लोग खडे हुए है।

जमीन बनी हुई है अंदर जाने के लीये कुछ जीने बनी हुई है यहाँ से लोग अंदर जाते है सामने एक दूकान बनी हुई है वहा पर एक गाड़ी लगी हुई है कुछ लोग खड़े हुए है एक टेबल रखी हुई है जिसका कलर ब्राउन है।

सामने तीन छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए है जिन्होंने सेम कलर की ड्रेस पेहना है झेंडा उनके हाथ में एक परी बनकर--

जिसके अंदर ऐसे लोग एंटरिंग ले रही है उसके ऊपर प्रणाम लिखा हुआ है बहुत भीड हो रही है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है एक छोटी सी दुकान बनी हुई है यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है एक बड़ा सा पेड़ लगा--

यहाँ दुल्हन एक सात फोटो क्लिक करवा रहे है ये दोनो बहुत मजे कर रहे है ये दुल्हन पोज दे रही है दुप्पट्टा थोडा ऊँचा करके दूल्हा हंस रहा है।

दिन का टाइम है धुप बहुत तेज निकल रही है आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है एक ट्रक खडा हुआ है जिसके ऊपर लोग माल भरके वे सामान जमा रहे है बड़े बड़े बोरे रखे हुए है इनके अंदर सामान जमाया जा रहा है।

एक लड़का सेल्फी ले रहा है इसका रंग थोड़ा सावला है चेक वाली शर्ट पहना हुआ है ग्रे व्हाइट एंड ब्लैक की पीछे की तरफ कूछ झंडिया लगी--

बलुन्स लगे हुए है तिरंगे कलर के ए_सी लगा हुआ है अ यहाँ पर बहुत बडा मिरर लगा हुआ है जिसमे कुछ लड़किया डान्स कि प्रैक्टिस कर रही है डांस सिख रही है।

यहाँ पर इस स्टेज पर एक लडकी खडी हुई है जिसने ग्रीन कलर की साडी बांधी हुई है ग्रीन एंड रेड कलर की इसकी हाथो मे मेहंदी लगि हुई है सर के ऊपर पीली पीली पोता हुआ है।

कांच का दरवाजा है ऊपर की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है इंग्लिश में द सिजर्स हैयर्स स्टाइल लिखा हुआ है एक अ लड़की बनी हुई है।

उसके ऊपर इंग्लिश में सलून लिखा हुआ है ऊपर की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर अर्बन कट हेयर सलून लिखा हुआ है।